यहाँ पर एक स्कूल के कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे है ये छात्र--

एक हरे रंग का मैट बिछा हुआ है और सामने तीन छोटी-छोटी खिड़किया बनी हुई है और उनके ऊपर काँच लगा लगा हुआ है।

यहाँ एक बगीचे में एक छतरी बनी हुई है जो की सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित है।

यहाँ पर पहाड़ो के बिच से कुछ पानी भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक किलिनीक बना हुआ है किलिनीक के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर संजीवनी किलिनीक का नाम लिखा हुआ है।

क्रमबद्ध तरीके से खड़े हुए है और इनके बराबर में एक रिक्सा भी खड़ा है रिक्से के बराबर में एक मोटर साईकिल है।

यहाँ पर एक विशाल मंदिर बना हुआ है मंदिर के ऊपर एक लाल रंग के झंडे लग रही है मंदिर के --

ए खम्भे भी लगे हुए है जिसके दोनों तरफ लाइट लग रही है सामने उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है।

हल्का लाल रंग का पेंट हो रहा है उसके बराबर में एक बिजली का खम्भा भी लगा हुआ है।

और एक डॉक्टरनी एक कॉपी पर दवा लिख रही है| मेज के ऊपर कुछ दवाये और भी रखी हुई है।

और दीवार के सहारे दो कूड़ेदान भी लगे हुए है एक कूड़ेदान लाल रंग का है और दूसरा कूड़ेदान हरे रंग का है।

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर लोगो की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर एक सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए युवक --